यह एक स्टूडियो नजर आ रहा है।

ताकि हमारे यहां से भी लोगों को अवार्ड मिले हैं।

यहां पर कुछ लोग बाइक पर भी जा रहे हैं यह एक पुराना सा प्लेग्राउंड लग रहा है।

एक इंसान के हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट भी हैं जो की ऑफिस की ओर जा रहा है।

कपड़े धोने का साबुन कोलगेट खाना बनाने के लिए ऑयल इत्यादि यहां पर बहुत सारा समान पड़ा हुआ है।

यह एक सुंदर सा पार्क है जहां पर बच्चे खेलने आते हैं।